दिखाई दे रहा है नीचे हरे कलर का मार्बल भी लगाया गया है।

कलर और अलग अलग डिजाइन में अलग अलग आकृति में दिखाई दे रहे हैं मोटर से पानी को खींचने वाली वगैरह --

इस फोटो में काफी सारी अलग डिजाइन प्रकार की आकृति दिखाई दे रही है कुछ एल_इ_डी टी_वी लगाई है ए_सी भी दिख रही है।

और कुछ अलग छोटी छोटी अलमारी वगैरह दिखाई है कुछ खंभे वगैरह और कुछ पंखे बड़े दिखाई दे रहे हैं जो काफी नीचे तक आए दिखाई दे रहे हैं एक व्यक्ति है जो

एक व्यक्ति है जोकि टी_शर्ट में खड़ा है।

इस फोटो में कुछ लोग कुछ अलग काम करते हुए बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो कि स्कूल के हैं कोई अपने प्रोजेक्ट पे काम करते दिखाई दे रहे हैं।

और ऊपर भी कुछ एक पेड़ वगैरा दिखाई दे रहा है फोटो काफी--

कुछ लोग काम करते हुए उधर आगे दिखाई दे रहे हैं यहाँ सोफे वगैरा जोकि भूरे कलर का सोफे प्यारे लग रहे हैं सफेद और भूरे कलर का सोफा हैं।

श्री मां साईं जी निवास का सैनिक साइ किल मार्ट नाम दिखाई देता हुआ प्रस्तुत है।

बहुत ही अच्छा और प्यारा सजाया गया है पेड़ पौधे और काफी हरियाली डिज़ाइन वगैरह बनाई गई हैं बहुत ही खूबसूरत नजारा --

काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं चेयर वगैरा हैं स्टूल टेबल टाइल वगैरा काफी साफ सुथरी दिखाई दे रहा है।

की है और एक साइड से साफ भी है और दूर तक कुछ हरियाली दिखाई देती हुई नजर आ रही है।

लाल कलर का बड़ा पॉट है जिसपे टिकटॉल करके नाम लिखा हुआ है जो सफेद कलर में --